यंहा शेर भी है चार शेर भी है और भारत माँ भी है और झण्डा भी है और बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है और घर भी है।